ये एक पार्टी हॉल की पिक्चर है।

और यहां पर बच्चों के लिए कुछ चीजे बटने के लिए रखी हुई है।

और थंब्स अप जैसे फ्रूट्स जूस रखे हुए हैं। एप्पी फीज और पानी की बॉटले सोडा --

कुंभज बना हुआ है और यहां मुसलमान लोग अपनी नमाज भी पढ़ते हैं और अल्लाह की पूजा करते हैं।

रैक में रखे हुए हैं और जूस वगैराह भी रखे हैं और यहां पर काउंटर में मिठाइयां कई प्रकार की रखी हुई हैं।

लविश सैलून फील द लग्जरी यह एक सैलून है जहां पर हेयर कटिंग --

ये यहां एक गार्डन दिख रहा है जो हरे हरे घासो से भरा हुआ है।

वहां पर गाना बजाना चल रहा है और कुछ लोग वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं।

यहां पर एक ब्लू कलर का सोफा रखा हुआ है और एक पर्पल कलर का सोफा भी और एक--

रेड कलर का सोफा ये बहोत हि सुंदर और कंफर्टेबल सोफा लग रहा है।

ये स्टॉप कटनी का है जहाँ पर ट्रेने जाती है कहीं तो कटनी जैसी रुकती है जंक्शन में--

यहां पर कुछ मुर्गे और मुर्गियां हैं।

वैश्य का डेरी पार्लर है जहां पर दही--